यहां पर पूजा की जा रही है और यहां पर लोग हवन कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे सबका अलग-अलग हवन कुंड बना हुआ है सब लोग अपनी-अपनी हवन कर रहे हैं।

ये हमारे घर से आगे एक रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छी और काफी बड़ी है यहाँ पे ढेर सारी लाइटिंग भी लगाई गई है जो काफी देखने में अच्छी लगती है यहाँ पर हमलोग एन्जॉय करने और खाना खाने जाते--

और इनकी पैरों की हाथों की यहां पे जांच कर रहे हैं कि उन्‍हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है।

ये हमारे गाव मे एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे ड्राई फ्रूट फल वगेरा सारी चीजों उपलब्ध मिलते है| यहाँ पे ढेर सारी फल फ्रूट ताजी-ताजी सब्जियाँ ताजे-ताजे फल और ताजे-ताजे फूल फलाबर मिलते है।